उसके ऊपर एक आदमी है बैठा हुआ।

यहाँ पर हमारे सामने एक पेट्रोल पंप है।

और इसके आलवा बोर्ड है और परदे है जो लाल --

महिला ने काले कलर की ड्रेस पहन रखी है।

जिसने पिले कलर की कैप पेहन रखी है टी-शर्ट है और ऊपर जैकेट है ऑरेंज कलर का |

हमे यहाँ एक आसमानी गाड़ी है बस है। सामने एक आदमी खड़ा है।

इसके अलावा उसने एक चश्मा लगा रखा है | आस पास पेड़ है हरियाली है |

हमारे सामने एक रेस्टुरेंट जैसा है जिसमे दिवाल है सफ़ेद दिवाल है।